बहोत ही अच्छी बड़ी जगह है जैसे कि बाहर जो घूमने की पिकनिक पॉइंट्स स्पॉट होता है वो जगह है।

रास्ता बना हुआ जाने का बहुत ही सुंदर सी पार्क लग रही है।